एक लाइब्रेरी का पीक है जिस के के अंदर बारडोर बना हुआ है बुक्स लगे हुए हैं शीशे के अंदर ऊपर से एक सीलिंग फैन लटक रहा है साइड में दीवाल पे हीनीचे में कालीन बिछा हुआ है।

ये एक किराना स्टोर का दुकान है।

शेरवानी में एक बंदा खड़ा है उसके बगल में और काली कलर की लड़की खड़ी है तीनों औरत साड़ी पहनी हुई है पीछे में डेकोरेसन किया हुआ है ब्लू --